यहाँ पर टी.वी. से चलने वाली एनटीना भी लगी दिख रही है।

मस्जिद काले और सफ़ेद रंग से रंगी--रंगीन की गई हैअ इसके आगे कुछ दुकान भी लगे दिख रहे है।

मस्जिद में सफेद रंग का दीवाल पर इस्तमाल किया गया है।

यहाँ एक हरे रंग का टेबल दिख रहा है टेबल के ऊपर नीले रंग के कुछ कपड़े रखे हुए हैं लोहे की एक रॉड भी दिख रही है।

यहाँ पर एक सफ़ेद रंग की मस्जिद दिख रही है मस्जिद का रंग सफ़ेद और काले रंग से किया गया हैं ।